भगवान की मूर्ति को बग्गी में ले जाया जा रहा है। शहर स की गली से।

स्काई ब्लू कलर का और सूट का कलर ऑरेंज कलर का है वो किसी मशीन --

इसमें दो औरतें दिखाई दे रही हैं जिसने एक ने साड़ी पहने हैं ऑरेंज कलर की और एक ने व्हाइट कलर का कास्टूम पहना हुआ।

आसमान खुला हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान के पीछे एक टावर दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक टेलीविजन दिख रही है और पीले कलर की स्पॉट लाइट दिख रही है।

इस इमेज में मुझे डॉक्टर दिख रहें हैं। नर्सें दिख रहीं हैं और कुछ महिलाएं दिख रही है। सभी ने मास्क लगाए हुआ है। कुछ फाइल्स दिख रहीं हैं।

एक आदमी कॉफ़ी बना रहा है। दो आदमी कॉफ़ी पी रहे हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है। कॉफ़ी --

नीले रंग की दीवाले दिखाई दे रही है। बी बहोत सारी स्पॉट लाइट दिखाई दे रही है और बैडमिंटन खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे--

पास एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं। जहां पर बैठने के लिए काफी सारे चेयरस लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे टावर दिखाई दे रहा है। मोबाइल टावर ।

से घर दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे गधे दिखाई दे रहे हैं। दो गधे हैं।

एक पीछे दिखाई दे रहा है और एक व्हाइट कलर की बाउन्ड्री वॉल दिखाई दे रही है।

गुलाब के फ़ूल हैं। वॉइलेट कलर के फ़ूल हैं। गेंदे के फ़ूल हैं। सफ़ेद फ़ूल हैं।

मेंस वियर कपड़े दिखाई दे रहे हैं। गर्म कपड़े दिखाई दे रहे हैं। पेट दिखाई दे रही हैं।

पीछे वाइट कलर की चेयर्स दिखाई दे रही है।

डिलायंस डिजिटल ली --

सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

बाहर एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा हुआ है पटना।